सड़क के किनारे बहुत सारे लोग मोटरसाइकिलस --

सड़क के किनारे दो मंजिला इमारत है जिसमें सफेद और लाल रंग --

बल्लभ लगाया गया है ओर उसके चारों तरफ --

भूमि पर काटने के लिए मछलियाँ रखी हुई हैं और चारों तरफ मछलियाँ मारी हुई हैं और उनके --

ईमारत छोटी-छोटी दीवारें बनाई हुईं हैं और उनमें --

और बैठने के लिए एक स्टॉप बनाया हुआ है। आसमान नीले और --

सड़क के किनारे लाल और ग्रे रंग की टाइलें लगाई हुई है और बैठने के लिए लाल रंग के --

रंग लाल सफेद है जो की देखने में बहुत ही सुंदर है।

बहोत से पीले रंग का चित्र बनाया हुआ है जिन में --

अपने पैर में नीले रंग के जुराब पहने हुए हैं जोकि --

सड़क के किनारे बहुत सी मोटर साइकिल रखी हुई हैं और बिजली की --

आठ खिड़किया है और जाने के लिए एक दरवाजा बनाया हुआ है। जिस पर भूरे रंग का इस्तेमाल किया हुआ है।

हरियाली है और आसमान नीला रंग का और सफेद --

ऑटो रिक्शा और गाड़ियां खड़ी हैं। सफेद लाल रंग की गाड़ियां हैं जिनके टायर्स काले हैं।

पानी में नी पानी का रंग हल्का सा नीला है और हरा है।

चार पुरुष इसके तरफ खड़े हैं जिन्होंने टोपिया और मास्क लगाए हुए हैं। एक मजदूर --

सड़क पर चारों तरफ लोहे की तारे लगाई हुई है और चारों तरफ --

हरियाली है पेड़ों पर।

ताले लगाए हुए हैं और उनमे पुरानी प्रतिमाए रखी हुई हैं जिन पर बहोत ही सुंदर --

बोर्ड में जो भी प्रतिमाएं रखी हुई हैं उनके नीचे नीले --

चट्टानों में एक आदमी खड़ा है जिसने नीले रंग के --

कपड़े पहने हुए हैं चट्टानों पर।

एक मंजिला ईमारत में बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई है।

नीस चश्मा लगाया हुआ है। चारो तरफ बुक्स रखी हुईं हैं और --

नीले पीले ब्लैक हरे चपले हैं।

जोकि लोहे से कवर की हुई हैं।

भैंसें खाना खा रही है उनमें --